मुझे यहाँ पर दो-तीन महिलाएँ भी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर बड़ी बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

मुझे यहाँ पर बोहत सारे लोग दिखाई दे रहे है मुझे यहाँ पर हरेभरे पेड़ दिखाई दे रहे है।

मुझे यहाँ पर प्लास्टिक की बोरिया दिखाई दे रहे है बोरियो के अंदर शायद कंकड़ पत्थर ही है।

--बहुत सारी लड़कियां और लड़के दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ लड़की का शीट दिखाई दे रहा है मुझे कैंची दिखाई दे रही है मुझे एक कॉपी दिखाई दे रही है।

लड़कियाँ बहुत छोटी -छोटी विविकाएं दे रही है मुझे यहाँ जंगला दिखाई दे रहे है मुझे यहाँ दीवाल दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यहाँ एक मैम दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ खिड़की दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ एक पंखा दिखाई दे रहा हैं।